बिल्डिंग के बगल में छोटी और दुकानें हैं कार के पीछे एक मोटरसाइकिल खड़ी है बगल में दो डमी रखे हुए हैं।

रस्ते के ऊपर एक नीले रंग की बड़ी सी टंकी है टंकी से एक पाइप नीचे की तरफ आ रहा है छत के रूख में--

एक मैदान में जे_सी_बी है जे_सी_बी खुदाई कर रही है।

प्लास्टिक के बर्तन में ड्राई फ्रूट्स को रखा गया है प्लेटों में ड्राई फ्रूट्स को सजाया गया है।

बीच में पर्दे के लिए एक रॉड डाली गई है दूसरी तरफ बेड लगे हुए हैं।